अ दुगो उधर देख रहलै पानी ही पानी है। अ दोनों बगल पहाड़ है पानी किनारे में बड़ा जइसन पहाड़ --

यहाँ पर टेड़ी डे लिखा हुआ है का दुकान है यहाँ सबसे बड़ा दुकान है फलों का भी दुकान है ।

और यहाँ पर छोर छोरा कटोरा --

यहाँ पर मगध मगध कंप्यूटर मगध कंप्यूटर प्रैक्टिस भी होता है यहाँ पर हाँ छठी दुर्गा --

आस्था स्थान है बजार है लखीसराय का है। यहाँ पर टोटो लगल है एक दो तीन --